अमने दो लड़के बैठे हैजो चड्डी बनियान में बैठें हुए है।

उसके पीछे एक झरना गिर रहा है।

जो एक बोर्ड पर लिखा दिख रहा है।

सारे फूल से सजाया गया है।

इसके ऊपर बहुत सारे बैलून लगाए गए हैं।

एक बाइक दिख रहा है जिसमें हेलमेट टंगे हुए--

अंदर में बहोत सारे रैक बनाए गए हैं जिसमें सामान रखा गया है।

यह एक बहोत बड़ा हॉल है।

जिसके बगल में बहोत सारे बाइक्स खड़े हैं।

इसके बगल में एक कार है। एक टोटो है। दो ट्रैक्टर है।

सामने एक टी_वी लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

बगल में एक स्कूटी खड़ी है।

यह एक कमरा का दृश्य है जहां एक चेयर दिख रहा है ।

उसके बगल में एक एयरटेल पेमेंट बैंक का दुकान है जो एक बोर्ड पर लिखा दिख रहा है।

उसके नीचे एक ब्लैक कलर का चेयर है।

यह एक कमरा का दृश्य है जिसमें बहोत सारे सीमेंट के बोरे रखे गए हैं।

के बगल में एक रेड कलर का धामा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बोतल रखे हुए हैं।

सामने एक सड़क दिख रहा है।

इसके ऊपर एक बाइक खड़ा है।

यहां दो घर दिख रहा है जिसके सामने दो फोर व्हीलर लगा हुआ है ।

इसके बगल में बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

उसके ऊपर बहुत सारे वाइट कलर का बल्ब लगा हुआ है।

दो खंभे दिख रहे हैं।

सामने एक लेडीस और एक जेंट्स दिख रहा है।

लेडीस के गोद में एक बच्चा है जेंट्स के हाथ में एक थैला है।

यह दर्शनीय आश्रम का सीन है।

उसके बगल में एक शटर का गेट दिख रहा--